किनारे-किनारे मैदान है जिसमें हरी भरी संदृश्य दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य भगवान अ जगन्नाथ की अ भव्य यात्रा चल रही है।

यहां बांसो से पूरे कमरे में अम्म अअअ खड़ी की वी है जो बहोत ही अच्छा दिखाई दे रहा है।

यहाँ सामने ये सभी तालाब पानी में डूब कर रात में नहाकर पूजा कर रहे हैं।

सामने एक बाइक खड़ा है। बाइक के रंग लाल अथवा काले रंग की है। एक व्यक्ति --